और बहुत ही डिजाइन में काटते हैं बाल और ये बहुत ही अच्छे दिख रहें हैं और अंदर में लाइट --

यह एक पेट्रोल टंकी है और यहाँ पे सभी लोग पेट्रोल लेने के लिए आते हैं और डेली डीजल भी लेने के लिए आते हैं और यहाँ पे सभी पेट्रोल ओर डीजल ले के बहुत दूर-दूर तक सफर करते हैं और ये बहुत ही अच्छे होते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे दिख रहे हैं और यह बहुत अच्छी तरह से पेट्रोल ले के पैसा --

और यहाँ पे एक स्टेज बनाए हुए हैं और निचे से ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाए हुए हैं और ऊपर में बहुत ही आदमी लोग खड़े हैं और इसे सजाए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरह से सजा रहें हैं। वैसे सजा के बहुत ही अच्छे दिखने देख दिखते हैं और बहुत ही --